बहोत बडा सा एरिया है जिसमें बहोत सारी है निचे की ज़मीन रेड है कुछ घास भी है कुछ हल्दिया रंग के पत्ते वाले है कुछ ग्रीन पत्ते वाले है ।

बड़ा सा घर है जिसकी दीवार की कलर येल्लो कलर है और नीचे में ब्लू कलर का रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग आसन जमा कर बैठे है कुछ लेडीजस है कुछ जेंट्स हैं।

सामने में एक वाइट कलर के बोर्ड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो वो कुछ लिख रहा है इस साइड में खिड़की दिख रही है जिससे उजाला आ रहा है सामने में कुछ लड़कियां भी बैठी हुई है।

नीचे में अलग-अलग से केबिन से बने हुए हैं लकड़ी की एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है सामने में एक कंप्यूटर है बहुत सारी साइड में कागज रखी हैं वाईट कलर की कुछ छोटे-छोटे सामान --